यहाँ पर कुछ लोग एंटरटेनमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर--

इमारत की छत पर लाइट्स जग रही नज़र आ रही है यहां पर काफी लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पर एक गाड़ी नज़र आ रही है वे गाड़ी सफ़ेद रंग की दिखाई दे रही हैं ।

उस छत के ऊपर कुछ लाइट्स लगी हुई नजर आ रही हैं वे लाइट्स जग रही हैं यहाँ पर एक गेट नजर आ रहा है काफी लोग नजर--

ये इमेज रात के समय ली गई है यहाँ पर एक पेड़ दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ लाइटस नजर आ रही हैं।

यहाँ पर काफी लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर रंग बिरंगी लाइट जगती हुई दिखाई दे रही है।